यहां मे बहुत सारा पेड़ पौधा सब मिल रहा है दिखाई मिल रा है और--

चक्का भी दिखाई मिल रहा है टायर भी दो ठो उसका पीछे में।

बस सात आठ ब्लू कलर से पैकिंग करने वाला सब दिखाइए और उसके सामने बड़ा सा पेड़ जो मर चुका है दिखाई मिल रहा है।

और और इसे अलग अलग प्रकार के एल्लो ए सब कलर से ढका हुआ है जो की और उसको रोप से बंधा हुआ है।

और सामने में बहुत सारा फ्लैग सब देखने को मिल रहा और पहाड़ और उसके साथ बहुत सारा पेड़ पौधा सब देखने को मिल रहा।

और बॉर्नविटा भी दिखाई मिल रहा और बहुत सारा न्यूट्री ये सब भी दिखाई मिल रहे हैं।

और यहां में हॉर्लिक्स भी दिखाई दे रहा है।

बूस्ट भी दिखाई दे रहा है और लैक्टोजेन सब भी दिखाई मिल रहा है।

बहोत बड़ा घर भी दिखाई दे रहे हैं। उसका सामने में गैलन भी एक ठो रखा हुआ है। बकेट भी एक ठो रखा हुआ है।

यहाँ में दो ठो काऊ दिखाई दे रहे हैं जोकि ग्रास खाके हैं।

और वाल भी दिखाई दे रहा है और यहा मे ग्रास सब दिखाई मिल रहा है उसका बैकग्राउंड में बहुत सारा और घर भी है।

एक ठो गेट दिखाई मिल रहे हैं एंट्री प्वाइंट के लिए और यहां में एक ठो फ्लावर पॉट के साथ फ्लावर भी प्लांट्स भी दिखाई मिल रहे हैं।

और यहां में आदमी भी दिखाई मिल रहे हैं दो तीन ठो।

इसमें बहुत सारा मिल रहे हैं और तीन ठो--

गाड़ी भी दिखाई मिल रहा है पेड़ पौधा सब भी दिखाई मिल रहे हैं और यह बहुत सा बड़ा फैक्ट्री है।

और उनका सब भी दिखाई मिल रहे हैं।

और एक ठो चार्जर भी दिखाई मिल रहा है और व्हाइट फ्रेश लाइट जलती हुई भी दिखाई मिल रहा है और यहां में मैप जो दमभूजा बनाया हुआ है।

और यहां में एक थु आदमी भी दिखाई मिल रहा है और उसका सामने में एक थू वाल दिखाई मिल रहा है।

पेड़ पौधा सब बहुत दिखाई मिल रहा है यहां में नोटिस बोर्ड भी एक साइड में दिखाई मिल रहा है।

यहां में बहुत सारा मिल रहा है वाइट कलर कपड़ा पहन के।

यहाँ में एक तो अलमारी दिखाई दे रहा है और यहां में सी मिरर भी दिखाई मिला उसके अंदर में बहुत सारा फोन रखा हुआ है।

में एक ठो बाइसिकल दिखाई दे रहा है उसमें एक ठो आदमी बैठ के दिखाई दे रहा है।

और यहां में एक ठो लंबा सा घर दिखाई मिल रहा है उसमें एक क्लॉक भी दिखाई मिल रहा है।

एक तो मिरर भी दिखाई मिल रहा है उसका अंदर में एक पान भी दिखाई मिल रहा है और बहुत सारा घर सब दिखाई मिल रहा है कपड़ा सुखाते हुए।

और यहां में एक ठो भी दिखाई मिल रहा है और रेड कलर का डस्टबिन और एक ठो ग्रीन कलर का डस्टबिन भी दिखाई मिल रहा है।

इक ठो कॉपी भी दिखाई मिल रहा है एक ठो चश्मा भी दिखाई मिल रहा है एक ठो टेबल भी दिखाई मिल रहा है।

फ्लैशलाइट जल के दिखाई मिल रहा--

यहाँ हमे बहोत सारा घर दिखाई मिल रहा और एक ठो बड़ा पेड़ दिखाई मिल रहा--

यहां में एक ठू बॉथरूम शॉवर और यहां में एक ठो मिरर दिखाई मिल रहा है।